भैया लोग बैठे हुए हैं और एक भैया के पास ढोलकी भी है और यह लोग कीर्तन कर रहे हैं और यह सब लोग कुछ पी भी रहे हैं।

जीपे स्कूटी और ऑटो वगैरा खड़े हुए हैं और यहां पर से एक अंकल भी आ रहे हैं।

और वहां पर उनकी एक टीचर भी बैठी हुई हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां प ये एक दुकान है मिठाइयों की हर चीज की सब कुछ रखा है यहां पर एक भैया भी है यहां पर--

यहां पर बहुत सारे ग्लास रखे हुए हैं एकदम लाइन से सीरीज बने हुए हैं एक दो तीन चार।

ऊं जैसा की आप देख सकते हैं ये कॉलेज क्लासरूम है यहां पर बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और यहां पर कुछ बच्चों के बैग भी रखे हुए हैं यहां पर --

जैसे कि आप देख सकते हैं ये कलीटा रेस्टोरेंट है और यहां पर बहुत सारे लोग बाग हैं और यहां पर--

कि आप देख सकते हैं ये एक लेक व्यू है यहां पर बहुत ही ज्यादा पानी है बहुत सारा पानी है यहां पर।

जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पेट्रोल पंप है यहां पर पेट्रोल पंप का लगा हुआ है ब्लैक कलर का पाइप भी लगा हुआ है यहां पर और इस पेट्रोल पंप में पेट्रोल लिखा हुआ है इस तरह भी लिखा हुआ है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक सैलून है यहां पर एक भैया कटिंग कर रहे हैं एक भैया की।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

और यहां से एंटर होते हैं अंदर जाते हैं यहां पर बहुत सारे--

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर रोड बना हुआ है यहां पर एक पाल्दा फैमिली ढाबा है और इसके बगल में भी--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

और ऊपर पोंड्स क्रीम वगैरा और शैंपू वगैरा टंगे हुए--

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक बहुत बड़ा माउंटेन एक पहाड़ है उसके जस्ट नीचे एक पेट्रोल पंप है।

जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ज्वेलरी शॉप की दुकान है।